सैलून यहाँ पे है और आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बंदा खड़ा हुआ है जो की अपनी पिक्चर क्लिक करवा रहा है स्पा एंड सैलून के सामने और ये देख सकते हैं गेट है यहाँ।